इस चित्र मे बहुत सारे अलग अलग प्रकार के एवं अलग अलग डिजाइन के अलग अलग कलर के कोलड्रिंक दिखाई दे रहे हैं।

पास खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है ड्रम दिखाई दे रही है एवं एक तराजु भी दिखाई दे रहा--

इस चित्र में एक बैनर दिखाई दे रहा जिसमें शिव कलेक्शन लिखा हुआ है।

इस चित्र में सफेद रंग का लाइट दिखाई दे रहा है।

यहां पे और भी कुछ बर्तन दिखाई दे रहे हैं।

और यहां पे कुछ महिलाएं भी दिखाई दे रही है एवं यहां पे कुछ सफेद रंग के पंखे भी दिखाई दे रहे हैं।

इस चित्र में बहुत सारे टेबल एवं कुर्सी दिखाई दे रहे हैं।

यहां पे सफेद रंग का पंखा दिखाई दे रहा है दीवाल का।

यहां पे दीवाल में सफेद रंग का पेंट किया गया है।

यहां पे बहुत सारे कपड़ा दिखाई दे रहा है एवं जूता और चप्पल दिखाई दे रहा है।

यहां पे बहुत सारी टेंपू दिखाई दे रहा है एवं कुछ बाइके और एक स्कूटी दिखाई दे रहा है और बहुत सारी बिल्डिंगे दिखाई दे रही है।

यहां पे कुछ गुब्बारे दिखाई दे रहे हैं जो कि पीले रंग एवं लाल रंग के हैं यहां पे बहुत सारी सफेद रंग की लाइट भी दिखाई दे रही है।

यहां पे बहुत सारा गुब्बारा लगे हुए हैं जो कि ब्लू एवं सफेद रंग की है।

इस चित्र में कुछ व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं यहां पे एक व्यक्ति बैठा हुआ है जो कि सोफे जैसी वाली कुर्सी--

यहां पे इमारत के ऊपर में एक ब्लू कलर की पानी की टंकी भी दिखाई दे रही है।

इस चित्र में कई सारे बच्चे एवं बच्चे दिखाई दे रही है।

यहां पे बहुत सारे बैनर्स लगे हुए है एवं यहां पे एक पीले रंग का टेंपू दिखाई दे रहा हैं।

यहां पे चश्मे का चित्र दिखाई दे रहा है।